जो काज जिसमें काफी घांसे दिखाई दे रही हैं झाड़ दिख रहे हैं सामने एक बना हुआ है जिसमे कपड़ा टांगा हुआ है अगल बगल मे बहुत सारे पेड़ पौधे जमे हुए हैं और कुछ कचरे भी--

यहाँ पे काफी चौड़ी सड़कें दिखाई दे रही हैं और सड़क के किनारे एक आदमी है जो खड़ा है और पेड़ दिखाई दे र --

ये कोई जंगल सा दिखाई दे रहा है और चारो तरफ कुछ ऊंचे-ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे है।

ये स्टार ए इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक और न्यू शुरुआत यहाँ पे एक येलो कलर के पेंट से बैनर चिपकाया हुआ है और यहाँ पे एक अ रिक्शा लगी हुई है।

--आ यहाँ पे इनॉक्स से आ कुछ लिखा हुआ है जो ऊपर से लइटे जल रही है और नीचे से भी लइटे जल रही है।